बहुत ही सूंदर है खम्बा है बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा मॉल जैसा बनाया पलंग का डिजाइन है बहुत अच्छा बहुत सुंदर देखने मे लग रहा है।